द पिक्चर क्लिक टू देखना है गार्डन गार्डन है गार्डन स्वीट स है बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा है।

द क्लिक टू देखना द गार्डन वास वेरी स्वचन्द है आइ रेयली लाइक दिस पिक्चर है बहुत अच्छा है।

द पिक्चर देखना दिरे चला हुआ ग्राउंड मे देखना है पिक्चर बहुत अच्छा है द गेट बहुत सुंदर है।

बहुत -बहुत सुंदर है बहुत पूरा तन- बहुत पूरा तन गर्म है ।

द पिक्चर यानी बहोत अच्छा हैबहोत बहोत सुंदर है आय लाईक अ पिक्चर